और नीचे कुछ स्कूटियां खड़ी हुई दिख रही है व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की और कुछ शटर लगे हुए दिख रहे है सीढ़ियाँ दिख रही है ।

पिक्चर मे एक चर्च दिख रहा है जिस पे व्हाइट कलर का पेंट है और कुछ अ सीढ़िया बनी हुई दिख रही है।

आसमान दिख रहा है अ पर्पल से कलर का कुछ वृक्ष दिख रहे है ग्रीन कलर के--